एक पेड़ नज़र आ रहा हैं।

रेड कलर से उसके उपर बैनर से लिखा हुआ हैं बहुत बड़ी पेड़ दिख रही हैं।

इस पिक में बहुत सारी जलेबी की पिक हैं।

कुछ लोग खड़े हैं ।

बाकी कुछ लोग खड़े हैं कुछ बैठे हुए हैं।

साबुन है हार्पिक है कुछ डब्बे रखे है कुछ साबुन की कुछ साबुन रखीं हुई है नीचे एक टूल्स पे --.

ये एक मार्किट की पिक हैं जिसके उपर बैनर लगा हुआ हैं हौंडा का --

ये एक बस स्टैंड की पिक हैं जो बस ग्रीन कलर का हैं।

बहुत सारी पेड़े दिख रही है बगल में एक बिल्डिंग दिख रही हैं।

रेड कलर का झंडा लगा हुआ हैं।

और वाइट कलर की दीवार है खिड़की है जो कांच की बनी हुई है साइड में गोल सी मिरर लगी हुई है तीन --.